ये एक दुकान है जो बहुत ही बड़ी है और काफी खूबसूरत है| यहाँ पे छे सात साड़ी है जो नाल लाल पीले नारंगी हरे रंग की है इसके पीछे एक सफ़ेद कपड़ा है जिसमें कपड़े बंधे हुए हैं।

इसके अंदर दो तीन पेड़ पौधे हैं। इसके आस पड़ोस बहोत सारी बिल्डिंगे जो बंद पड़ी हुई हैं।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

इसके आस पड़ोस का हरियालापन बहुत ही अच्छा है और इसका आस-पास बहुत ही अच्छे-अच्छे पेड़ पौधे भी हैं।

एक बिल्डिंग है जो बहुत ही बड़ी है। इसके नीचे दो-तीन डंडे लगे हुए हैं जो सफेद रंग के हैं और लोहे कि पाइपे लगी हुई है।

यह लोहे की जा साईड में लोहे की लगी एक हरी सरिया हैं इसके आस-पास की बिल्डिंग बहुत अच्छी हैं और काफी बड़ी भी हैं।

जगह है और काफी बड़ी भी है। इसके आस-पास का वातापरण वातावरण बहुत ही अच्छा है और हरा भी है। इसके अंदर एक पूल है जिसके अंदर ढेर सारे कछुए हैं।

जिनके उपर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और इसके आगे सीमेन्ट का बहुत बड़ा ढ़ेर है इसके पीछे डिब्बा पड़ा हुआ है जो हरे रंग का है।

इनकी मेज नारंगी रंग की है उसपे दो तीन कपड़े रखे हुए हैं इसके आगे एक पुतला है जो नारंगी रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

एक गार्डन है जो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे इस गार्डन के अन्दर दो तीन मेज पड़ी हुई हैं जो की नारंगी और कलर की हैं।

एक खम्बा है जो काला है इस डाक खाने के पड़ोस में एक आदमी बैठा हुआ है उसने पीली टीशर्ट पहन रखी है इसके नीचे जो खम्बे हैं वो ब्लैक कलर के हैं।